झरने का पानी सफेद रंग का है।

यह एक श्री साईं कृपा ग्लास फिल्टर --

यह फोटो एक रेस्टोरेंट का दिखाई दे रहा हैं।

यह झरना सफेद रंग का है।

यह किला बहुत पुराने ज़माने का दिखाई दे रहा है।

यह फोटो एक गैराज का है।

जिसका नाम शिवम साखेवाड़ी होटल है।

यह फोटो एक नदी का है।

यह नदी बहोत सुंदर दिखाई दे रही है।

यह फोटो एक होटल का है।

यह फोटो एक पान की दुकान का है।

किसी ने यहां पर फोटो खींचा हैं।